इसके अंदर पोल पर लाइटें भी लगाई हुई हैं और एक कुर्सी भी लगाई हुई है।

ब्लैक कलर की कार है और एक बाइक भी खड़ी हुई है।

और ये तस्वीर हरी मिर्च की है जिसमें एक आदमी हरी मिर्च की छटाई कर रहा है।

बाइक खड़ी हैं जिसके आगे एक बाइक खड़ी हैं और बाजू में एक कार भी खड़ी हैं।

जिसमें एक आदमी अपनी हाथ में एवरी मैन वार नाम के किताब लेकर खड़ा हुआ है।

यह एक लाल कलर की बिल्डिंग है जिसके अंदर आदमी जा रहे हैं।

यह एक चिकित्सा केंद्र की तस्वीर हैं जो की नीले रंग की हैं।

इसके पास एक बिल्डिंग है जिसका काम अभी चल रहा हैं जिसके ऊपर बहुत से लोग --

यह एक ज्वेलरी दुकान है जिसका नाम कन्हैयालाल ज्वेलर्स एंड संस है।

इस मंदिर के आगे ये हरे रंग की चटाई से नीचे छैया की हुई है।

जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा लगी हुई है और सभी लोग इधर तेल भरवाने हुए आए हैं।

रोड की तस्वीर है जिस रोड के किनारे बहुत सारी दुकाने हैं और पास में एक --